ये चित्र में एक मकान बन्ने का काम चल रहा है और यहाँ पर ईंट की दीवारें बन रहीं हैं ।

इस चित्र मे एक जिम दिखाई दे रहा है और यहाॅं पर जिम करने का समान रखा हुआ है।

बोहोत सारी मशीने रखी हुई है ऊपर छत कि तरफ लाइटस लगी है और पंखा लगा हुआ है और जिम कि दीवारे अ सफेद रंग की है और अ दीवारों पर लाइट लगी हुई है।

ये चित्र में एक फंक्शन अ हॉल दिख रहा है और यहाँ पर कई सारे रंग बिरंगे लाईटों से सजावट की गयी है।

ने की तरफ पार्किंग एरिया है जहाँ पर बोहोत सारी मट्टी पड़ी है और जार --

और दीवारों का रंग हाँ नारंगी रंग का हैं और साइड में ब्लैक कलर के पिलर्स हैं।

ये ऊपर की तरफ उम लाइटों से सजावट की गई है और यहाँ पर एक न पेड़ भी लगा हुआ है मॉल की दीवारें काफी ऊंची है और ये एक उसमें कपड़ो की दुकान भी है।

मॉल दिख रहा है और इसका शेड प्लास्टिक का बना हुआ है। अं इसके शीशे और दरवा-अ-जे खिड़कियां और दरवाजें शीशे के बनी हुई है।

एक पार्क दिखाई दे रहा है बीच में बहुत बड़ी लाइट्स है आसपास इसके बहुत से नारियल के पेड़ लगे हुए हैं।

ये चित्र में एक कार्यालय दिख रहा है और सामने की तरफ सड़क न् नजर आ रही है।